अलमारी के अंदर पांच कांच के बोतल नजर आ रहे हैं।

इस छवि में एक सफेद रंग का खंबा नज़र आ रहा है।

इस चित्र के बाईं तरफ एक बड़ा नदी नजर आ रहा है।

इस छवि में तीन इंसान क्रिकेट खेल रहे हैं।

छवि के बाईं तरफ पीले रंग के कपड़े पहने एक आदमी नजर आ रहा है।

इस चित्र में कई इंसान कुर्सियों पर बैठे हुए हैं।

दिखाए गए छवि में रात का समय हो रहा है।

दिखाए गए चित्र में एक स्कूटर नजर आ रहा है।

दिखाए गए छवि में एक टेबल पर फूल रखे हुए हैं।

दुकान के बोर्ड पर श्री हिंगलाज बुक डिपो लिखा हुआ है।